यहां पे उम्म उम्म पलंग का अह लगा रखा हुआ है और उसका डिजाइन काफी अच्छा है और उसके पीछे ही--

यहाँ पे एक आदमी मेज पे अ अ मेज पे रख के कुछ लिख रहा है कागज पे और यह ब्लू कलर का शॉर्ट पहना हुआ है और व--

एक मग भी रखा हुआ है और एक पानी बॉटल भी रखा हुआ है।

यहाँ पे काफी अच्छा डेकोरेशन किया गया है और यहाँ पे फूलों से सजाया गया है जोकि--

और यहाँ पर बहुत सारा पेड़ हरे बड़े दिख रहे हैं और यह पे पेड़ के उस बगल अ--

स्टेडि स्टेडियम है और यहां पे बहो यहां पे--

और यहाँ पे ग्रिल भी लगाया हुआ है और ग्रिल का कलर ब्लैक है और बाकी सारे मतलब कि ब्लैक --

के बगल में एक चार टंकी का चार टंकी का पानी नल का टंकी रखा हुआ है और--

और यहाँ पे शीशा भी लगाया गया है और बगल में एक आदमी खड़ा होकर के कुछ देख रहा है जिसका कलर व्हाईट कलर का--

यहाँ पे एक डॉ डॉक्टर लाल पैथोलोरिया डॉ का बैनर लगा हुआ है और यह बैनर दीवाल पे लगा हुआ है और दीवाल का कलर येल्लो है और --

दो लड़का खड़ा है और एक लड़का साइक एक लड़का खड़ा है ब्लैक कलर का शॉर्ट पहने हुए है और एक लड़का साइकिल पर बैठा हुआ है व्हाईट और ब्लू कलर --

टी शर्ट फुल टी शर्ट पहने हुए है और वो दोनों चप्पल पहने हुए है और यहां पे एक बुलेट --

और ये लोग अ एक आदमी फोन पर बातें कर रहा है और वह--

एक आदमी काउंटर पे बैठा हुआ है और यह एक मिठाई का दुकान है और मि मि और बहोत सारे मिठाई--

और मेडिसिन में एक फ्रिज भी रखा हुआ है और वहाँ पे कोई भी आदमी नहीं है और--

यह एक जिम का फोटो है और यहाँ पे बहुत से सारे जिम करने वाले साइक्लिस्ट स्टाइलिश मशीन लाके रखे गए हैं और यहाँ पे--

यहाँ पे एक उम हॉस्पिटल का फोटो है और यहां पे--

व्हाइट कलर का पी अ येलो ग्रीन कलर का शर्ट पहना हुआ है और वह--

उम्म दुर्गा जी गणेश जी का मूर्ति है और ई इसके नीचे बहुत सारे दुकान भी है और दुकान पे कुछ सामान बिक रहा है।